इसका नीला कलर का कोट है और लाल कलर का डिजा--

यहां एक पेपर लगी हुईं हैं बहोत लंबी।

लाल कलर के पर्दे हुए लगे हैं और आगे तरफ बहुत सारे खाने हैं।

यह एक माला है इसमें वाइट कलर के फूल हैं बीच में लाल कलर के--

यहां तकिये पे ग्रीन और सफेद कलर की चेक्स प्रिन्ट है एक आदमी खड़ा हुआ है।

सॉल्यूशन ता कि एक ब्लू कलर कि कार खड़ी हुई हैं ग्रीन --

देख रहे हैं दो अंकल एक आंटी पीछे बैठे हैं।

दो अंकल फूल बेच रहे हैं एक आंटी पीछे पत्तियां बेच रही है अंकल आगे रेड --

यहां एक एरोप्लेन बना हुआ है पीछे इंडिगो ये --

यहाँ एक ट्रक खड़ा हुआ है इसके ऊपर ब्लू कलर के अक्षरों से लिखा हुआ है ओम साईं राम रेटलिटरिंग ।

उसके बाद पीले फूल उसके बाद हरे कलर के फूल उसके बाद ऑरेंज कलर के फूल--

पीछे तरफ एक ग्रे कलर की दीवार बनी हुई है।

ये किसी का किचन है जो ब्लैक और व्हाइट कलर से बना हुआ--

यहां एक गाड़ी वॉश करने का है सर्विस ।

सर्विस है यहां पर सामने व्हाइट कलर की कार है और उसके पीछे ब्लैक कलर की और--

पहाड़ के नीचे बने हुए हैं।

दुमले दुमले गाटर है जो गार्ड को कवर कर रहे हैं।